ये हमारे दरभंगा का एक्सिस बैंक है अ ए.टी.एम. है।

और यहाँ स सभी ग्राहक आते हैं और यहाँ अपना पैसा जमा करते हैं।

पहले रस्म होता है जैसे मटकोर होता है शादी होता है फिर ई लड़का-लड़की को विदा किया जाता है फिर लड़का-लड़की को --

ये बुक का दुकान है इसमे ल लड़का-लड़की बुक में ख ख खरीदने के लिए ले जाते हैं।

और सामने मंदिर भी है गाछ भी है ग्रीन भी है इसमें चार एक दो तीन चार चार गो नाव है।